यहां पे बहोत बड़ा बड़ा पहाड़िया भी है।

सायकल दिखाई दे रहा है।

इस रूम में बहोत सारा आदमी लोग हैं।

नीचे फर्श पे टाइल्स लगा हुआ है।

यहां पे एक स्कूल है स्कूल में बहुत सारे आदमी लोग हैं।

यहां पे अस्कुल है इस स्कूल में बहुत सारा लड़कियां खड़े होकर प्रार्थना कर रही है।

यह एक बहुत बड़ा रूम है।